यहाँ पर सामने कुछ सब्जियों की दुकान हैं।

और सामने एक कंप्यूटर रखा हुआ है।

सामने कुछ बिजली के खंभे लगे हुए हैं।

यहां पर सामने एक दुकान हैं।

और यहां कुछ बोट लगे हुए हैं सामने कुछ लोग हैं।

यहां पर सामने एक कपड़ों की दुकान है।

सामने कुछ बोरियां रखे हुई है।

यहां पर सामने एक ढाबा है।

और यहां पर कुछ बोर्ड लगे हैं।